सामने हमें एक बुक डेपो की दुकान दिखाई दे रही है रंग-बिरंगी किताबें भी दिखाई दे रहीं हैं।

यह एक कपडों का शोरूम है हरे रंग बिरंगे कपडे दिखाई दे रहे है।

यह पहाड़ियों का एक शहर है उसका यह बस स्टैंड दिखाई दे --

अं-बाजार के पीछे या बस्ती के पीछे सामने कितना सुंदर पहाड़ --

बच्चों ने काले रंग की ड्रेस पहनी है।

घर दिखाई दे रहें हैं ऊपर से नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें की टूर्नामेंट होता है यह एक बहोत बड़े अस्तर का फील्ड है।

जिसमें शायद राष्ट्रीय मैच होते होंगे।

बड़े-बड़े लाइटे भी देख सकते हैं।

इसकी सामने बहोत पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं वह लोहे की रेलिंग भी है साइड में कुछ घर वगैरा बने है।

खेत के बगल में बहोत सारे बड़े पत्थर हैं खे-खेत के निचली साइड में दीवाल लगा र --

और हारमोनियम भी अलग-अलग कलर के दिखाई दे रहें हैं कहियों के कवर भी है।

यह कोई राजा महाराजाओं का बंगला लग रहा ह।

शायद एक खम्बा भी दिखाई दे रहा है जो बिजली के तारों का --

हुँ पेट में बड़े अच्छे ढंग से सजाके रक्खा हुआ।

और इसके पीछे बहोत सारी इमारते दिखाई दे रही हैं।

यह एक मोटर साइकिल का वर्क शॉप दिखाई दे रहा है इसकी ठीक सामने एक रिपेयरिंग के लिए मोटर साइकिल खड़ी हुवी है।

मलवा दिखाई दे रहा है मलवे की बगल में रोड दिखाई दे रही है।

एक बच्चा साइकिल पर भी चल रहा है कुछ बच्चे खेल कूद कर रहे है।

और काफी यह लक्सेरी कार नज़र आ रही है।